इस पिक्चर में मुझे एक मैदान दिख रहा है जिसमे बहुत गन्दगी फैली हुई है बहोत सारे कूड़े फेके हुए है।

पिक्चर में मुझे एक मंदिर दिख रहा है।

चित्र मे मुझे बहुत बड़ा हॉस्पिटल दिख रहा है जिसका रंग बिस्किट और व्हाइट कलर का है उस हॉस्पिटल के ऊपर बहुत बड़ा एक छत है।